इस तस्वीर मे मुझे एक फूड स्टोर दिखाई दे रहा है अ यहां पर खाने-पीने की चीजें बना रहे है चार-पांच अ वर्कर्स है।

यह जो तस्वीर है ये चर्च के अंदर की ली गई तस्वीर है जिसमें कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर आ चर्च में क्रिश्चियन रीति-रिवाज से एक शादी हो रही है उस शादी को दिखया गया है।

सेल्फी ले रही है और एक लड़की है जिसके हाथ में सेलफोन भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक स्पा दिख रहा है और इस स्पा का नाम है बाल-दाढ़ी और यह जो स्पा का ऊपर का कलर है वो रेड कलर का है।

यहाँ पर मुझे एक बहुत सारी भीड़ दिखाई दे रही है जो सब भीड़ है जो पानी के अंदर है।